बहुत ही प्यारा है भीड़ उमड़ा हुआ रहता है।

बहोत सुंदर एक प्यारा सा होम्योपैथी डॉक्टर का मम इमेज दिखाया गया जो की वाकई में बहुत बेहद खूबसूरत है बेहद खूबसूरती ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी डॉक्टर है जो बहोत मम मम खराब-खराब की बीमारी का सही-सही इलाज किया जाता है वो भी --

और हर एक चीज़ हर एक सामन का उपलब्ध है दुकानों में और बहुत कम दामों भी में बिकने वाली ये दुकान है जो की एन जो की कम दामों में बिकने वाली ये दुकान है जो की कम पैसों में सप्लाई किया जाता है दुकानों से अच्छी --

यात्रियों को इसके लिए एयरपोर्ट होना अति आवश्यकता है।

तिरंगा की जो तिरंगा देखते ही हर इंसानों का मन में सानी तन-मन से जाग उठती हैं

ए-ए इसकी जो ग्राउंडेड है बेहद ख़ूबसूरत है और एक कलरफुली में डिज़ाइन की हुई है।

एक अ बेहद ख़ूबसूरत रेस्टोरेंट की इमेज नज़र आई है जो रंग बिनर रंग-बिरंग के पौधे पेड़ - पौधे --